अह घड़ी दिख रही है फर्श सफेद नहीं--

इस फोटो में हमको बहोत सारे पत्ते नजर आ रहे हैं कुछ पीले पत्ते हैं कुछ हरे पत्ते--

यहां पर इसको देखकर काफी हरियाली महसूस हो रही है।

एक प्लेग्राउंड है यहां पे लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं।

और यहां पर कैमरा लगा हुआ है दो चेयर्स रखी है बाबा जी की फोटो है टेबल है और एक--

एक कार नजर आ रही है जिसका कलर है व्हाइट कुछ पौधे नजर आ रहे हैं।

और टैंट नजर आ रहे हैं जो कि ग्रीन कलर के टैंट हैं आस पास मिट्टी नजर आ रही हैं।

सामने दो पेड़ नजर आ रहे है कुछ बच्चे नजर आ रहे है दो पुलिस वाले भी नजर आ रहे है।

कार सफेद रंग की है खंभे नजर आ रहे हैं।

यहां पर कुछ समान पड़ा है और जो फर्श है वो ईटों का बना हुआ है आसपास कबाड़ का समान हमें ऐसा लग रहा है जैसे कबाड़ का समान है।

इस फोटो में एक आदमी का पैर दिख रहा है उसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

इस फोटो में मिट्टी दिखाई दे रही है काफी सारी मिट्टी है उसके ऊपर कुछ पड़ा हुआ है।

इस फोटो में घास पे एक--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

इस फोटो में काफी सारी पंख नजर आ रहे हैं।

और इस फोटो की जो दीवारें हैं वो सारी व्हाईट हैं।

सामने पंखा लगा है कुछ लाइटें लगी हुई हैं।

कर्ल्स लेस क्रैक्स ये सब नजर आ रहा है।

इस फोटो में काफी सारे लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं और कुत तीन लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं दीवार जो है सफेद है।

और एक बच्चा है जो आग के पास खड़ा हुआ है।